यहां पे दो खिड़कियां भी दिख रही है और यहां पे बहोत सारे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे--

ये किसी मूर्ति का व्रत है।

यहां पे एक खिड़की भी--

जिसमें छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें फोम वाले बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पे बहोत सारे सजावटे की गई है।

जिसमें ग्यारह उन्चास का टाइम बता रहा है।

बहुत सारे बंदूकके भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे दो व्यक्ति भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

टक्टर का कलर ब्लू कलर में है।

यहां पे बहोत सारे आलू भुजिया के पैकेट भी रखे हुए दिखाई दे रहे--

इसके बगल में एक कोलकाता लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे गेंदे के फूल के दरवाजे में सजावटे की गई है।

यहां पे बहुत सारे लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही है।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

ये एक ब्यूटी पार्लर है जहां पे तीन चेयर दिखाई दे रहे हैं।

एक पानी का बोतल भी दिखाई दे रहा हैं।

इसके पीछे बहोत सारे छोटे छोटे दुकाने भी दिखाई दे रही है।